एक नदी है जिस नदी में पानी बह रहा है अगल-बगल पे अगल बगल में मैदान में आधी घास जमी हुई है पेड़-पौधे भी है बादल सफेद है।

बड़ा नदी है नदी-तालाब है जिस नदी में ऐ दो लड़के जो नाव चला रहे हैं और एक लड़का खडा हुआ है।

एक ऐ नदी है जिस नदी में पानी भरा है और सीडियां बनी हुई हैं अगल बगल सभी लोग आ रहे हैं खड़े हैं मन्दिर बनी हुई हैं।

एक बोटले रखी हुई है कु सामने कुछ लोग खड़े हुए है आर हरी पत्ती दिख रही है बादल सफेद है।